के बैठे हुए है साइड मे दो देवियाँ जैसे लग रही है यहाँ पर नीला नीला व हरा-हरा बैकग्राउड दिख रहा--

यहाँ पे एक नदी टाइप की दिख रही है और एक ब्रिज दिख रहा है रेलवे जैसा पीछे जंगल टाइप का दिख रहा हैं ।

और एक जंगल भी दिखाई दे रहा हैं और बारिश का मौसम लग रहा हैं।

आगे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। एक मंडप टाइप का बना हुआ है और यहाँ पर घाट भी बना हुआ है।